और नीचे खूबसूरत टाइलें लगी हुई है जिसका कलर ब्राउन है।

मजे की बात ये है कि इसके ऊपर हमें एक ए_सी नजर आ रहा है।

अ प्लांट्स पड़े हैं जिनमें अ हमारे पास मोर प्लांट हैं और टेबल प्लांट हैं और --

और दरख़्त लगे हुए एक दरख़्त जो बड़ा और बहुत सारी हिरणे और दरख़्त मौजूद है सामने एक बिल्डिंग भी है।